इसमे एक ने ब्लैक व्हाइट अम येल्लो कलर की शर्ट पहनी हुई हे नीचे कार्पट बीछा हुआ हे कार्पेट का कलर ग्रीन कलर का है।

पीछे बच्चे है ऊपर लाइट जल रही है उसमें एक क्वेशन चिन्ह मड़ा हुआ है।

की इंनर वेयर भी एण्ड ब्लैक कलर का पेन पहना हुआ है एक पीछे कुछ लड़के बेठे हुए है।